और उसका दूसरा साइड में भी अलग अलग प्रकार का बहुत ज्यादा पेड़ है।

यहां मैं दोनों साइड में बहोत बरा बरा घर है और बीच में एक गेट है।

और दूसरा वाला घर में एक थू रेड कलर का पोज भी है।

और दूसरा साइड में एक घुसने का सीढ़ी भी है।

पिंक कलर का कपड़ा पहन के और हाथ में घरी भी है।

एक दुकान है दो फ्लोर का और उसका आगे में एम_आर_एफ लिखे है।

ओर साइड का खिरकी में पर्दा भी है।

और उसमें से पानी गिर रहा है और पीछे में तीन ठो लाइट जलके है।

बहुत ज्यादा पेड़ पौधा भी है और वो टेन के अंदर में चेयर भी है और टेबल और टेबल के नीचे में पानी बॉटल भी है।

और उसके पीछे में टीना का घर और दीवार में सफेद कलर का--

एक बड़ा सा पहार और उसका पीछे में भी पहार है।

और इधर में बहुत ज्यादा घर है अलग अलग प्रकार का घर--

एक ने सफेद कलर का कपड़ा एक ने ब्लैक कलर का कपड़ा।

और दोनों साइड में इंडिया फ्लैग भी है।

ये एक बुक स्टोर है और इधर में बहोत सारा बुक्स है।

और ऊपर में बहुत सारा लाइट भी है और एक आदमी वॉच पहन के है और एक आदमी ब्लू कलर का कपड़ा पहन के।

यहां में पांच लड़का है और सब जींस और पेंट पहन के है।

ये एक ब्रिज है और उसका नीचे में बहुत ज्यादा साफ पानी है।